है जो पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई दे रही है ये सभी नाँव पानी के ऊपर--

लेडिस है और उसके कुछ तीन बच्चे है ये सभी छोटे बच्चे है जो बैठे हुए नज़र आ रहे है।

तीन पहिया वाली ऑटो है। यहँ श शहर के अंदर घूमती है सवारी को लेकर।

चलते हुए नजर आ रहे है |--

सामान भी लगा हुआ है गुब्बारे भी लगा रख--

अच्छे स्थान की ओर जा रही है।

उनके पीछे राम लक्ष्मण और उसके भाई --

टाइलों से बना हुआ है।

बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही है ये --

बीच में पार्क है पारक के साइड में एक -

मेन गेट हैं जो बहुत बड़ा है।

एक मेनगों वाली एक स्ट्रॉबेरी वाली है।

किया जाता है यह एक--

एरिया बनाकर बनाया गया है इनके ऊपर हवन होता है।

बलिया लगी हुई नज़र आ रही है जिसके द्वारा मंदिर का निर्माण-